जहां पर ऊपर की तरफ बहुत सारे लगाए गए हैं।

आगे की तरफ बहुत सारे लोग कुर्सियों पर--

और यहां पर बहुत बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

आगे की तरफ बहुत सारे टेबल और कुर्सियां लगाई गई हैं।

बहोत सारे लोहा भी दिख रहे हैं।

बहुत सारे दरवाजे लगाए गए हैं।

सामने मुझे एक स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रहा है जहां--

में मुझे दृश्य में एक मंदिल दिखाई दे रहा है जहां पर एक पोल दिख रहा है।